फ्रिज है वाशिंग मशीन है वाटर प्यूरिफायर है ।

कुछ लोग यहां बैठे हुए हैं ।

माजो चार्ट और अलग-अलग चीज़ें भी दिखाई गई हैं उनके साथ में स्टॉल है ।

अपने ब्रांच को प्रमोट करने के लिए।

फ़्रेम दिखाए गए हैं यहां पे दीवारों पे टंगे सुंदर सोफ़ा है लॉबी एरिया है ऑफिस का ये कहीं के--

वाटर राइड भी है ।

यह कोई ऑफिस का सीन है ।

और अलग-अलग चीजें--

टीचर यहां बच्चों को देख रही है कि वो क्या कर रहे हैं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर--

दो दुकानें हमें दिखाई--

वो अजंता डेरी है और दूसरी दुकान बेकर्स की वह खाली दिखाई है यहां--

अ जहां बहुत भीड़ हो रही है थोड़ी-बहुत --

यहां बहुत ही अच्छा मौसम दिखाया गया है हनुमान जी--

यह बहुत खूबसूरत दिखाया गया है ।